कुछ बिजली की तारे दिखाई दे रही है आसमान दिखाई--

यहां पर एक ट्रक दिखाई दे रहा है।

जो कि पटरियों पे चलता हुआ दिखाई--

कुछ घर दिखाई दे रहे है।

ये यहां पर बहोत से लोग दिखाई--

और कुछ लाइट्स दिखाई दे रही है।

और बिजली की तारे दिखाई दे रही है।

कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

बहोत से कैमराज लगे हुए दिख रहे हैं।

और कुछ टेबल और कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।

कुछ खिड़कियां दिखाई दे रही है।

और कुछ कीचड़ दिखाई दे रहा हैं।

एक पोस्टर लगा हुआ दिख रहा है।

कुछ खिड़कियां दिखाई दे रही है।

एक दीवार घड़ी दिखाई दे रही है।

जिसने पगड़ी पहनी हुई दिख रही है।

जहां पर कुछ टेबल और कुर्सियां दिखाई दे रही है।